और इसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा रोड भी है और कुछ व्यक्ति इधर-उधर जा रहे हैं और इस बिल्डिंग नीचे कुछ गाड़ियां भी पड़ी हुई है।

रायगढ़ के अंदर एक बड़ा सा स्कूल हे जो चार मंजिला हे और इसके सामने तरह-तरह के डिजाइने बनी हुयी है।

सामने इसके बाउंड्री हे हरे भरे पेड़ पौधे भी हे कुछ बड़े पेड़ पौधे भी हे और छठे पेड़ पौधे भी हे और यह सफेद कलर का है।